जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे बहोत सारे व्यक्ती दिखाई दे रहे हैं यहाँ के मंदिर से भी --

यहां पे सामने बहोत सारे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं और यहां पे भी नीचे ग्रीन कलर में घांस लगी हुई है लकड़ियां लगी हुई है ऊपर डोरी है और ऊपर बादल भी दिख रहे।

और यहाँ पे एक मूर्ति भी रखी हुई है और यहाँ पे --

यहाँ पे सामने एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है जिसमे पानी-पानी भरा हुआ है और यहां पे --